अच्छाई झलक रही है बहुत ही अच्छी तस्वीर है देखने में भी सुंदर है बहुत ही आकर्षक है बहुत ही अच्छी गाड़ियां हैं सभी रंग की।

मन को भाने वाला लुभाने वाला बहुत ही अच्छी है पिक्चर है एवं आधुनिक ज़माने की तस्वीर है।

बहुत ही सुंदर है सजाया हुआ है दीवार पर तस्वीरें लगी हुई है बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर दृश्य है।

देखने के लायक है सुंदर है अच्छा दृश्य है।

फुटकर व्यापारों की छोटी छोटी बड़ी बड़ी दुकान हैं इनके ऊपर एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है एवं सफेद एवं हरे कलर की गुब्बारे भी है।

अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा दृश्य है एकदम अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है इस तस्वीर में बहुत सारे लोग बैठे है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सुंदरी नजर आ रहा है यह तस्वीर में प्राकृतिक सौंदर्य है।

देखने के लायक है यह दृश्य बहुत ही अच्छा है यहां पर बहुत ही अच्छी प्रकार से सजाई गई।

अच्छी है और एकदम अच्छी लग रही है फूड कर व्यापार की दुकान है तरह तरह के समान से सजाई गयी है।

गार्डन भी है जिसे अंग्रेजी भाषा में हम गार्डन कहते हैं और हिंदी भाषा में बगीचा कहते हैं।

महिलाएं हैं तो कुछ पुरुष है कुछ पुरुष बस के ऊपर चढ़े हुए हैं कुछ नीचे है कुछ चल रहे हैं एवं आसपास में घर एवं पेड़ पौधे है।

इस तस्वीर में बहुत ही अच्छे से सुंदर से मुझे बहुत ही बड़ा घर दिखाई दे रहा है यह तस्वीर बहुत अच्छी है।

लाइट चस रही है बत्तियां जगमगा रही है अच्छा दृश्य है घर के बहुत ही अच्छा पेंट किया हुआ है।

एवं दो स्कूटर भी खड़े हुए हैं एवं फुटकर व्यापारो की दुकानें हैं बहुत ही अच्छी दुकानें हैं।

एवं एक सफेद कलर की गाड़ी भी दिखाई दे रही है और एक पास में इसके घर भी है जिसे अंग्रेजी भाषा में होम कहते हैं।

यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही है एवं इसके पास में छोटे छोटे घर है अंधेरा छाया हुआ है।